ये द सिटी कैफे है एक रेस्टोरेंट जो गया में ए.पी. कॉलोनी के पास है अभी यहाँ पे बहोत सारे फ़्रेंड्स यहाँ का फूड टेस्ट करने आए हैं।